पीछे में बहुत जंगल झाड़ दिख रही है।

पेड़ भी है हरे कलर का बहुस सारा पेड़ लगी हुई है।

यह एक रूम का दृश्य है ।

एक डब्बा रखा हुआ दीवाल का कलर व्हाइट है।

एल_जी लिखा हुआ है।

एक पीछे में घर भी दिख रही है।

बहुत सारा पीछे घर दिख रहा है।

मदरसा के बच्चे पढ़ रही है।

असमान व्हाइट कलर का है।

पीछे करकट डाला हुआ है व्हाइट कलर का ।

पोल दिख रहा है।